और यहाँ पर दो लोग नहा रहे हैं और ऊपर गन्दगी पड़ी हुई है और यहाँ पे एक लड़का बैठा हुआ है और व लोग मजे से नहा रहे हैं ।

बहोत सारे कंप्यूटर हैं लैपटॉप हैं और टेबिलें लगी हुई हैं। सामने ब्लैक बोर्ड है और उस वाइट कलर की पोताई है और नीचे टाईल्स लगे हुए हैं।

इस चित्र के अंदर बंगालियों का वो दिख रहा है मंदिर । ये मंदिर के अंदर सामने कांच लगे हुए हैं वाइट कलर के पिलर हैं ।

और नीचे रेड कलर की सुजुकी कार खड़ी हुई है और नीचे गाड़ियां खड़ी हैं ।

ये एक चित्र है। इस चित्र के अंदर एक पाइप लाइन दिख रही है जहाँ पर एक चक्र खड़ा हुआ है। यहां पर बहोत सारे लोग ही बैठे हुए हैं।